सामने मुझे एक राज ऑप्टिकल दिखाई दे रहा है दुकान और उसके उपर-र उसके बाजूमें एक खंबा बहुत सारे तार और दिखाई दे रही है नीचे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

गेट के उस पार एक घर दिखाई दे रहा और एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

इमेज में मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है उसमे लिखा है बँक ऑफ महाराष्ट्र और एम.जि. एंड फिटिंग --